आफिस मे अपना वर्क कर रहे हे यहा पे बाइक पार्क किए हुए हें कितने सारे ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड हे बहुत ही--

--ह-म-म और लो भाई साहब देखिए कितना बड़ा ये ये सरकारी कार्यालय है बहुत ही बड़ा आगे हम देख सकते है ।

देखिए ये एस.आर.एल. डायगोनिस्टिक है यहाँ पे ड़ाएगनटिक जांच यहाँ पे जांच किया जाता है देख सकते है यहाँ पे कितनी सारी बाइक लगी है।

बहुत ही बड़े आदमी का घर है कितने सारे कारे है इनके पास ये लग रहा है विश्वकर्मा पूजा में पूजा-उजा हुआ है।